एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग में दरवाजे भी दिख रहे है सामने एक गाड़ी खड़ी है।

सामने घास दिखाई दे रही हैं छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ बकरी जैसे दिखाई दे रहे हैं।

एक बगीचा दिखाई दे रहा है जहा पर बहुत सारी हरी घास भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे टेंट के पाइप लाइन्स लगे हुए हैं और उस एक टेंट में गुलाबी और सफ़ेद कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

स्विमिंग पुल में दो लोग पानी में हैं सामने दो तीन लोग बाहर खड़े हुए हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

और उसी के ऊपर फिर फूलों का गुलदस्ता से सजा हुआ है बाजू में सीढियाँ बनी हुई हैं लाल कलर का कपडा लगा हुआ है।

ऊस गाडी के ऊपर एक वाइट कलर का रखने के लिए बना हुआ है पीछे लाइट दिख रही है चमक रही है।

हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही है नीला आसमान दिखाई दे रहा है सफ़ेद बादल दिखाई दे रहे हैं।

''सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं बहुत सारी टू व्हीलर्स दिखाई दे रही हैं।''

यहाँ बहुत सारा स्टॉक्स रखा हुआ है पैकेट्स में पिंक पैकेट ग्रीन पैकेट --

एक किराना की शॉप दिखाई दे रही हैं जिसमें साबुन बिस्कीट तेल सब कुछ दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद नीले बादल दिखाई दे रहे हैं और उनके ही सामने जस्ट पानी भी दिखाई दे रहा है और उनके जस्ट सामने झाडी पेड़ों की पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

बाजू में एक गेट नीले कलर का दिखाई दे रहा है और लाइट के कारण पूरी दीवार चमक रही है।

लकड़ी लगी हुई है वहां पर और एक बिल्डिंग जो है उस पर ग्रीन कलर पुता हुआ है सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है और एक बोर्ड भी लटका है।

उस शीट के ऊपर एक टुकनिया रखी है उस टुकनिया के ऊपर फूलों वाला गुलदस्ता--

रखा हुआ है और उस गुलदस्ते के ऊपर छत है।

लाल मिटटी वाली रोड दिख रही है बाजू में खेत जैसे दिखाई दे रहा--

पहाड़ से दिखाई दे रहे हैं पहाड़ में एक टावर भी दिख रहा है हरे सफ़ेद बादल दिख रहे।